का पंप है जिसमें हवा वगैरा सर्विस वगैरा होती है।

ऊपर मीटर केस जुगाड़ भी रखे हुए हैं कंप्लेसर वैसे जुगाड़--

एक लाइट चमक रही एक लाइट नहीं चमक रही ऊपर खिड़की खुली--

पानी का ढकना खुला हुआ है।

स्टेज पर काम कर रहे हैं तीन आदमी कुर्सी पर बैठे हैं सामने गणेश भगवान की फोटो भी है।

और अनेकों लाइट लगी हुई है नीचे लाल एक कलर का मैट भी लगा हुआ हैं।

यह ईसा मसीह का मंदिर है।

सफेद कलर की प्रतिमा बनी हुई है। रेड कलर की नीचे से हो रही है।

ड्रेस पेर रहे हैं कुछ आदमी इनको ऊपर से देख रहे हैं और लाइट भी लगी हुई है।

और सामने टीन सेट पर से सूरज दिख रहा है पेड़ भी दिख--

ये कुछ किचन वगैरा हैं नीचे टाइल लगी हुई हैं नीचे हरे मैट पड़े हुए हैं।

सामने लाइट भी लगी है एक पंखा भी लगा--

एक आदमी किताब पढ़ रहा है कुछ आ औरतें हाथ जोड़ रही है एक आदमी गेट के पास खड़ा है।

और इस तरफ पहाड़ का टिल्ला लगा हुआ है।

और दुकान पर सामान मिलता है।

यह एक होटल है होटल का कलर पीला कलर का है।

तीन गाड़ियां खड़ी है एक लाल कलर की तीन सफेद कलर की एक ब्लैक कलर की--

दीवार पर हरे कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

और दो बाइक भी खड़ी है एक थार पीछे खड़ी है।

यह एक यात्री टेंपो में वाला सफेद--

बोर्ड पर लिखा हुआ है लैब ।

एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है एक काउंटर लगा हुआ है काउंटर के ऊपर लाइट लगी हुई है एक कुर्सी लगी हुई है।

यह एक जंगल में झोपड़ी लगा रखी है।

और अंदर में भी प्रेस डब्बे में र--

सफेद कलर की लाइट लगी हुई है।

आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

कोई पिज्जा ऑडर कर रहा हैं।

फ्रिज के अंदर ठंडा रखा हुआ ड्यू वगैरा।

एक होटल या घर के बाहर दो बाईकें खड़ी है एक बच्चा भी खेल रहा है।

पीछे दो कुर्सियां पड़ी हैं।

यहां पीछे पंखा लगा हुआ है दीवार पर।

कुछ बैनर लगे हुए हैं।

गेट है गेट के ऊपर एस_एस_सी लिखा हुआ है एस_एस_सी --